दो हमें सफेद रंग की तीन हमें सफेद रंग की बत्तख दिखाई दे रही है और एक लाल रंग की बत्तख दिखाई दे रही है।

ताकि उनको बीच में कहीं बाहर न जाना पड़े और अच्छे से उनकी पढ़ाई हो।

जो कि बहुत ऊंचा ऊंची इमारत बनी हुई है। ये पीले रंग की इमारत बनी हुई है।

और लेफ्ट साइड पे रेड कलर का टावल दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है नीचे सीढ़ियां दिखाई दे रही है।

सब जा रहे हैं बहुत सुंदर फूलों की डेकोरेशन कर रखी है। नीचे की तरफ सीडीओ के नीचे की तरफ--

काले अंगूर जो हैं सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं।

और इसको पिक का स्वाद दिखने में बहुत अच्छा होता है काले रंग के अंगूर आते हैं और हरे रंग के अंगूर आते हैं इनको सुखाकर और उनकी किशमिश भी बनाई जाति--

इस दुकान के बाहर की भीड़ यह बता रही है कि यहां पर चाय बहुत अच्छी मिलती है बाहर की तरफ एक और काउंटर रखा हुआ है ये शायद चाप बनाते हैं क्योंकि इसमें चाप लटकी हुई है।

कि इसने टोल म् दिया या नहीं दिया यहाँ पर एक केबिन बना होता है उसमें एक--

एक हमारे को टेबल अ नजर आ रही है चेयर लगी हुई है।

इस पिक्चर मे हमारे को एक नदी दिखाई दे रही है जिसमें एक पत्थर रखा हुआ है और उसके बीचों-बीच एक आदमी बैठकर फोटो करवा रहा है।